एक खंबा दिखाई दे रहा है बिजली के तारे दिखाई दे रहे हैं पीछे ढेर सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

लड़के हैं लड़कियां हैं पीछे सर खड़े हुए हैं जो उन्हें व्हाइट कलर का बहुत बड़ा सा बोर्ड है।

मयूरिया रॉयल होटल ये होटल दिखाई दे रहा है सामने और यहां पे लाइटें लगी हुई है।